ज़ीने दिख रहे है बहोत सारा सामान नज़र आ रहा है और--

एक पार्क है जिसके अंदर बहोत सारे पेड़-पौधे नज़र आ रहे है ऊंचे-ऊंचे लम्बे वाले--

अ कुछ काम घर के बनाने का काम चल रहा हैगड्ढे हो रखे है पीछे पेड़-पौधे--

वो पीछे से एक बहोत बड़ा मीनारा दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे नज़र आ रहे है ऊपर आसमान--

अअ झंडे के साइड से वो दुप्पटा पेहने हुई है झंडे के कलर का--

सामने से लोहे की जालियाँ नज़र आ रही है पीछे बिजली--

बहोत सारा बड़ा सा कारखाना दिख रहा है जिसके अंदर बीच में से आग--

नीले कलर का सफ़ेद कलर का आसमान नज़र आ रा--

अ कुछ लाल कलर का डब्बा पड़ा हुआ है सामने से दरवा--

वह सफ़ेद और पिले कलर की नज़र आ--

एक बहुत बड़ा ईमारत दिखाई दे रही है जिसके अंदर हरा ऑरेंज लाइट ग्रीन --

स्टेडियम जैसा लग रहा है पर वो है क्या ये नहीं--

एक बहुत बड़ा रोड नज़र आ रहा है जिसमे एक टांगा दिखाई दे रहा है आदमी उस--

टांगे को चला रहा है आसपास कुछ ऑटो रिक्शा बस --

निचे रेड कलर का मखमल का कपड़ा बिछा हुआ है सामने--

बीच में से झरना बेह रहा है पानी का आस--

रस्ता दिया गया है की यहाँ से रस्ता जाएगा ये दो बहोत बड़ी-बड़ी इमारते नज़र आ रही है इस मॉडल में--

कुछ पत्थरो पे हल्का-फुल्का सा रंग दिखाई दे रहा है ऑरेंज और हरे कलर का--